एक मेन गेट ल-लगा हुआ है व-वहां आर्च आँगण लिखा हुआ है एक कार खड़ी हुई है जो की ब्लैक कलर की है और एक घर है जो--

और यहाँ पर एक रोड है पास वाली बिल्डिंग येलो कलर और लाइट पिंक कलर की है और पास में भी --

लोहा दिख रहा है और घर दिख रहे हैं पास में और चिड़िया दिख रही हैं।

घर में एक वह बना हुआ है हाउस से लेकर महा रूद्र ऑटो सर्विसिंग लिखा हुआ यहाँं पर कार खड़ी उनकी सर्विसिंग होती होगी शायद--

ग्रीन कलर का है और पास में पेड़ लगे हुए हैं दो बड़े-बड़े झाड़ हैं और बाजू वाला घर दिख रहा है जिसमें लाइट पिंक कलर है।

पिक्चर में एक ईटों का घर सा बना हुआ है जहाँ पर चिड़िया दिख रही है और अच्छा बना हुआ है।

टाइप की बने हुए हैं। जहां पर मिट्टी और सूखे पेड़ लगे हुए हैं और कहीं भी दिख रही है आगे चलकर भी बर्बाद मिट्टी सी पत्थर है बहुत सारी बिल्डिंगे भी दिख रही हैं।

पिक्चर् में एक किला दिख रहा है जो की ऊंचा सा है पर यहां पर एक मेन गेट लगा हुआ अंदर की साइक भी बहुत सारी महल से बने हुए हैं।

एक अंकल जी बैठे हुए है जो गार्ड है शायद वो भी बैठे हुए एक कार रखी हुई जो की व्हाइट कलर की हे है।

और यहां पर एक रोड सा है नीचे न्यूज़ पेपर डाले हुए है नीचे कारपेट भी डाला हुआ है पेड़ दिख रहा है ग्रीन कलर के और आसमान भी देख रहा है नीचे कार भी दिख रही है।